इसमें मुझे बास के डंडे बने दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक मशीन दिख रही है।

इसमें मुझे हाईवे रोड दिख रही है।

इसमें मुझे बाहर एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

इसमें मुझे बहुत सारे पेड़ लगे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे ड्रॉवर्स बने दिख रहे हैं।

इसमें मुझे टू व्हीलर्स खड़ी दिख रही हैं इसमें मुझे एक रिक्शा खड़ा दिख रहा है।

इसमें मुझे फ्रेशर्स पार्टी का बोर्ड लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे दरवाजे में लगे कांच से दिख रहा है।

इसमें मुझे गाड़ी खड़ी दिख रही है।

इसमें मुझे बाहर कुछ लोग दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कुछ गाड़ियां दिख रही है।